काँच की वो लगी हुई हैं।

पेड़-पौधे हैं हरे-भरे। लिखा हुआ है। ब्लू कलर से है कांच है।

बॉटल हैं थर्मोमीटर हैं पंखे हैं।